और एक साइड से एक बाइक वाला भी आ रहा है।

और इसके पास भी दुकान में और भी बहुत सारे ब्रेड रखे हुए हैं।

उसके पास में एक नदी जैसा है जहां पर बहोत सारा पानी भरा है।

और ई रिक्शा पकड़े एक व्यक्ति खड़ा जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पेहने है ई रिक्शे के कलर लाल पीला हरा तीन कलर में ई रिक्शा है।

दोनों तरफ फ्रूट पेड़ बने हुए हैं और गुरुद्वारे के फ्रंट साइड पर--

और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है संत मिशन स्कूल ।

यहां पर बहोत सारे अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे लखे हुए हैं।

और एक हल्का रेड और एक जरीदार और शाइनिंग वाले कपड़े है जो कि बहोत अच्छे लग रहे हैं और इसे एक डमी ने पहन रखा है।

और यहां पर एक व्यक्ति काउंटर पे खड़ा है जो कुछ सामान खरीद रहा है।

पास में यहां पर एक ब्लू कलर का व्यक्ति खड़ा है यहां पर रेड रंग की तीन कुर्सियां पड़ी हुई है।

और ऊपर एक इंटु मोर बने हुए हैं एक कलश रखा हुआ है मंदिर के अंदर महिला प्रवेश द्वार लिखा गया है।